और आसपास बिजली वाले खंबे भी है।

काउंटर के ऊपर बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं पहाड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पे कुछ छोटे छोटे घर दिख रहे हैं।

कुछ ने टीशर्ट पहना हुआ है कुछ बच्चे भी हैं।

बिजली वाली बोर्ड है जिसमें तार भी लगा हुआ है।

यह एक दुर्गा मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान है।

जहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है आपका मतदान लोकतंत्र की जान।

जहां पे कुछ छोटे छोटे घर दिख रहे हैं जिनकी छत टीने से बनी हुई है एक रोड दिख रहा है।

घर के आसपास बहोत लंबे लंबे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

दो चक्के वाले गाड़ी दिख रहे हैं और एक घर व्हाइट कलर का दिख रहा है।

इस बिल्डिंग में बहोत सारे कमरे हैं खिड़कियां है दरवाजे हैं।

बहोत सारी कार दिख रही है।

यहां पे एक पेड़ पे एक बच्चा चढ़ा हुआ है जो की शर्ट पहना है।

यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे फूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिखा हुआ है।